इसकी लाइटे भी सही कर दी गयी है और चर्च पर सफेद और लाल रंग का रंग हुआ है।

जोकि टिकट बनाता है और टिकट लोगो को देता है और--